खेत में हरा घास लगा हुआ है पीछे घर है घर के ऊपर शीट लगाया हुआ है लोहे से।

यहाँ एक नया घर है घर के ऊपर सैट्रिन लगा हुआ है नीचे ढलाई मशीन है रेता रखा हुआ है।

यह एक छोटा सा स्विमिंग पुल है पीछे घर बना हुआ है आमने सामने बहुत सारे हरे पैड है।

गार्डन हरा भरा है नीचे हरी भरी घास लगी है हरी भरी पौधे है नीचे आसमान नीला उजाला कलर का बना हुआ है।

कुछ लोग जा रहे हैं जो एक लोग ने लाल टी -शर्ट पहना हुआ है एक नीला टी-शर्ट पहना हुआ है पीछे पहाड़ है पहाड़ के ऊपर हरी भरी घास लगी हुई है।

यह एक पहाड़ी इलाका है पहाड़ों के बीचो बीच कुछ घर है पहाड़ पे हरे भरे पौधे लगे हुए है।

इसके आगे एक रोड हैबाइक खरी हुई है कुछ लोग खड़े हुए हैपीछे हरा-भरा पेड़ हैआसमान नीला है।

यहां पे कुछ गाड़िया खड़ी हुई है जो एक जेसीबी है तीन ट्रक खड़ा हुआ है जेसीबी लाल कलर का है पीछे कुछ लोग खड़ी है।